ये आदमी बैठे हुए हैं काउंटर पे आदमी बैठे हैं।

चौकी बहुत मस्त मस्त है लाइट का प्रबन्ध--

ये झूले झूल लड़का का जो है यहां पे झूले झूले जाते है।

नर्सरी का सामान मिलता पेड़ पौधे--

और यहां पे लाइट भी लगी हुई है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एक टीफन रखा हुआ है।

ये यहां पे एच_आर_ए किचन लिखा हुआ है।

ये किचेन है यहां पे तस्वीर लगी हुई है।

यहां पे पीछे जाले की दरवाजे हैं यहां पे फूल पत्तियां भी लगी हुई हैं बेल भी लगी हुई है।

नाव है पानी बहोत गंदा दिख रहा--

काले रंग की टी शर्ट शर्ट पैंट पहन रखी है।

चीजें दिख रही आपको खाने की भी।

और यहां पे झूला भी लग रेया है।

यहा पे चौधरी लकी राम आर्य जगन्नाथ आश्रम है।

और यहां पे ये पानी सा है और यहां पे--

एक दो एक दोनों मोटे मोटे आदमी हैं यहां पे एक लुगाई है तीन आदमी है और यहां पे बैग रख्या हुआ है।

द रेस्टोरेंट है यहां पे--

उस गाड़ी को साफ कर रहे हैं इस गाड़ी को बिल्कुल रखे है।

और यहां पे सरिता नोट लिखा हुआ है।

स्टील गेट लिखा है ग्रिल है।

यहां एक बस खड़ी है एक आदमी है इसके पीछे बैग लगा हुआ है।